यहां में बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

ये घर को रेड और येलो कलर से पेंट करके--

कोई कोई आदमी जो छतरी उरा के भी दिखाई दे रहा है।

घर को व्हाइट कलर से पेंट करके है।

घर का ऊपर में बहुत सारा वायर और लाइट भी टंगा के दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारा सामान जो अलमारी का अंदर में भी दिखाई दे रहा है।

यहां में बहुत सारा स्टूडेंट दिखाई दे रहा है।

और ऊपर में अ लंबा सा घर जैसा दिखाई दे रहा है जोकि ऊपर में टीना लगाके है।

और ऊपर में लाइट लगा के भी है और वॉल में स्विच भी दिखाई दे रहा है।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

यहां में एक गेट जैसा दिखाई दे रहा हैं जो कि ऊपर में येलो कलर का मूर्ति दिखाई दे रहा है।

घर का ऊपर में फैन लगाके है और वाल में स्विच बॉक्स और वायर भी दिखाई दे रहा है।

और ये साइड में एक सीढ़ी भी दिखाई दे रहा है जो कि ऊपर का है।

डेस्क का ऊपर में बैग भी दिखाई दे रहा है आगे में बड़ा सा ब्लैकबोर्ड भी है।